यहां पर कुछ इटे रखी हुई है जिसके ऊपर एक पट्टा रखा हुआ है बैठने के लिए अभी पेड़ों की परछाई दिखाई दे रही है खंबे दिखाई दे रहे हैं।

और इसे दो सौ दस भी लिखा हुआ है यहाँ पे बहुत सारे पेड़ दिख रहे है मिट्टीया वगैरा है।

बहुत सारी दुकाने है उधर स्टडी पॉइंट भी है एक और एक चूरू फ्राइड चिकन होटल चुरुं प्लेस के नाम से एक पैनल लगा हुआ है।